सामने एक टैंक भी बना हुआ है और--

अना वो सूखा पेड़ भी है और सूखे पेड़ के साथ एक गाड़ी भी खड़ी है और इसमें --

बहोत सारी मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां जलाई गई है और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ये आधे से आगे इसमें धुन्ध छाई हुई है।

पैसे निकाल के आ चुका हैं उसके हाथ में पैसे हैं और परस हैं।

सामने एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिखाई दे रहा है।

नीचे टाइलें लगाई गई हैं और सामने--

के ऊपर एक पाइप भी निकला है और इसके ऊपर बहोत ज्यादा घास उग चुकी है और इसमें आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें बादल छाए हुए हैं।